पर एक पंखा लगा है तीन व्यक्ति खड़े है एक व्यक्ति काउंटर के पास खड़ा है कुछ स्टील की कुर्सियां भी लगी हुई है।

इस फोटो में प्लास्टिक के बंद बॉक्स में फेस वॉश रखा हुआ है और यहां पर इन पर एक लड़के का चित्रण भी बना हुआ है।

सामने एक शॉप दिखाई दे रही है जिस पर कांच लगे हुए--

यह फोटो एक स्टोर की है जो कि बच्चों के टॉयज की स्टोर --

कपड़े रखे है जो की अलग अलग तरह की हैं और अलग अलग रंग के भी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा--

यहां पर दो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं पास में ही नीले रंग का ड्रम भी रखा हुआ है।

बहुत सारी टेप भी रखी हुई है यहां पर रंग के कुछ डब्बे भी रखे गए हैं और तीन सीढ़ियां भी जा रही है यहां पर लगी है।

एक स्टील का पोल लगाकर उस पर कुछ लाइटे भी लगी हुई है पास में कुछ स्पीकर रखे हुए हैं।

जो एक पुरानी कलाकारी से बनेया गया है।